कई सारे बैनर बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

उसके आगे मारुति सुजुकी अरेना का बोर्ड लगा है जो एक शोरूम दिख रहा है।

जिसकी सूंड पर एक आदमी बैठा हुआ है।

पीछे एक शीशे का गेट भी लगा हुआ है।

कुछ लोहे की रेलिंग से डिजाइन बनाया गया है जो सफेद कलर का है।

बड़ा सा घर जैसा बना हुआ है।

पिंजरे जैसा बना हुआ है और शॉप जैसी दिख रही है।

और कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं जिसमें लाइटें जल रही हैं।

फोटो में एक हॉल जैसा दिखाई दे रहा है जो फूलों से सजाया गया है।

पेट्रोल पंप के अंदर एक कार भी खड़ी हुई है।

कार के पीछे शॉप वगैरा बनी हुई है।

हॉल में फैन चल रहे हैं विंडो भी लगी हुई हैं।

इस फोटो में एक अपोलो टायर्स का बोर्ड लगा हुआ है।

और अलमीरा भी रखी हुई है अलमीरा में भी सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में एक पार्क दिखाई दे रही है।

कच्ची जमीन पर कुछ पिलर जैसे बने हुए हैं।

कलर जैसा भी दिख रहा है जो ग्रे कलर का है।

इस फोटो में एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

रेल की पटरियां भी दिखाई दे रही हैं।

रेड कलर की रेलिंग भी बनी हुई है।

टेबल पर बहोत सारी दवाइयों की बॉटल रखी हुई है टैबलेट वगैरा के पत्ते भी रखे हुए हैं।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

आगे एक लड़के के हाथ में बोर्ड है जिस्से पी_ए_सी मध्य जोन लिखा है।

इस फोटो में एक खिलौने की शॉप दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी अलमीरा रखीं हुई है।

टेडी बियर वगैरा कार जैसे खिलौने है।

काउंटर पे भी बहोत सारे डिब्बे वगैरा रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप बना हुआ है जिस

इस फोटो में एक बैंक दिखाई दे रहा है।

जो शीशे के सामने फोटो क्लिक कर रहा है और दूसरा लड़का उसके पीछे खड़ा हुआ है।

बहोत बड़ी दिखाई दे रही है।